साइड में एक आदमी का हाथ भी दिखाई मिल रहा है और अंदर में बहुत लाइट लोग भी बहुत सारा जला के दिखाई मिल रहा।

पार्क का आगे एक गाड़ी भी पार्क करके दिखाई दे रहा है।

और बुद्धिस्ट का पीछे है बंबू का पेड़ देख रहा है।

उसके पीछे एक नदी भी दिखाई दे रही। नदी का कलर भी पानी का कलर भी क्रीम कलर में दिखाई दे रहे।

बहोत सारा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में मुझे एक चश्मा का शोप दिखाइ --

फैन भी दिखाई मिल रहा है और लेफ्ट साइड में एक पर्दा भी दिखाई मिल रहा है और दीवार का कलर जो येलो कलर में दिखाई मिला है।

इसमें एक नदी दिखाई दे रहा है और ऊपर में ब्रिज भी है।

पिक्चर में मुझे एक फूल का शॉप दिखाई मिल रहा है।

ऊसमें तीन आदमी बैठ के दिखाई मिल रहा है।

पानी का कलर जो ब्लू कलर में दिखाई मिल रहा --